बड़ी सी पेड़ दिखाई दे रही है चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में एक बहुत बड़ा सा डांस एकेडमी का ऑफिस है इसमें एक कांच की टेबल बनी है दो चेयर और--

इस चित्र में एक बहोत बड़ा सा--

और कुछ लड़के लोग खड़े हुए हैं दुकान के बाहर--

पेट्रोल पंप के पास बहुत सारी गाड़ियां पेट्रोल डला रही है।

और बड़ी- सी पेड़ लगी हुई है पेट्रोल पंप के बगल में --

इस चित्र में एक बहुत बड़ा सा डेयरी है जिसमें अह बहुत सारे आइसक्रीम वगैरह रखे है अंडे वगैरह रखे है और फ्रिज में --

चित्र मे एक बहोत बड़ा सा क्लास रूम है जिसमें बहोत सारे बच्चे लोग चेयर में बैठे हैं और सामने उनके टेबल लगे हुए हैं।

छोटे छोटे डिवाइडर में पौधे लगे हैं।

पार में बहुत सारी गाड़ियां पार्किंग की गई है।

और सीढ़ी भी बनी हुई ऊपर जाने का एक बहोत बड़ा कंपलेक्स है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा सा पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप पे बहोत सारे लोग यहां पे--

चित्र में एक बहोत बड़ा सा फालूदा का स्टाल लगा है जिसमें बहोत सारे गिलास रखे हुए हैं।

इस चित्र में बोहोत बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसमें--

इस पर पौधे लगे हुए हैं।

और बहोत सारे गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं।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

और कॉलेज की बिल्डिंग है जिसमें बहोत सारे नीचे में छोटे छोटे गमले में पौधे लगे हुए है। फूलों की--

इस चित्र में एक बहोत बड़ा मस्जिद है मस्जिद के पीछे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और सामने में बहोत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है।

राशन का दुकान है जिसमें बहुत सारे राशन रखे गए हैं बगल में भी एक सौ एक तो राशन का दुकान दिखाई दे रहा है।